इस इमेज मे मुझे एक तला दिखाई दे रहा है तले के आजूबाजू हरे-हरे घास दिखाई दे रहे है एक दो--

नाँव दिखाई दे रही है एक नाँव डूब रही है पानी सा भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने बोर्ड लगा है और उसमे पेड़े लगाये है और उसमे सामने पोस्टर चिपकी हुआ है एक खिड़की दिखाई दे रही है।

और बलप लगी हुई है नीचे हरी कलर की नेट बिछी हुई दिखाई दे रही है एक बक्सा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक ॲम्ब्युलन्स जैसी एक गाडी खड़ी हुई दिखाई दे रही है और उस पर लिखा पी_ई_आर_एफ_ई_सी_टी पर्फेक्ट जो की बाट कलर की है। और उसमे--

बोरियाके एक बाल्टी सार पे लगे हुए है और ठहरी हुई है एक आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है।

इमेज में मुझे एक मन्दिर बना हुआ दिखाई दे रहा है और मन्दिर पर बहुत सारी रोसनी लगी हुई दिखाई दे रही है।